काफी पत्ते बड़े और छोटे भी दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पोत पॉट भी--

कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

एक सीमेंट की दुकान है और इसके पास में चाय की दुकान है।